इस छवि में एक कांच का दरवाजा नजर आ रहा है।

दिखाए गए छवि के बाईं तरफ काले रंग के सीट नजर आ रहे हैं।

दाएं तरफ दीवार में कई सारे कागज लगे हुए हैं।

इमारत के ऊपर एन आई पी एस लिखा हुआ है।

इस तस्वीर के दाएं तरफ एक एयर कंडीशनर है।

दिखाया गया छवि एक स्टेडियम का छवि है।

दिखाए गए तस्वीर में एक टूटा गाड़ी दिख रहा है।

इस छवि पर कुछ नंबर्स एक खंबे पर लिखे हुए हैं।

नदी के ऊपर सफेद आसमान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में कई सारे बकरी नजर आ रहे हैं।

बकरियों के आस पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

दिखाए गए छवि में दिन का समय हो रहा है।

इस चित्र के दांई तरफ चैंपियंस लिखा हुआ है ।

दिखाए गए छवि में सात पुरुष नजर आ रहे हैं।

इस छवि में दिन का समय हो रहा है।

विद्यालय के बच्चे चित्र बना रहे हैं।

बताए गए छवि में दिन का समय नजर आ रहा है।

दिखाए गए छवि के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पेड़ पौधों के बीच में से जाने के लिए एक रस्ता बना हुआ है।

दिखाए गए छवि में दिन का समय हो रहा है।

खाने का प्लेट काले रंग का है।

प्लेट के ऊपर खाना सजा कर रखा हुआ है।

यह छवि एक जिम का भीतरी भाग है।

दिखाए गए छवि में सुबह का समय हो रहा है।

इस चित्र में चार पंचिंग बैग्स नजर आ रहे हैं।

छवि के दाएं तरफ एक भगवान का कैलेंडर दरवाजे पर लगा हुआ है।

दिखाएं गए तस्वीर में बाई तरफ कोने में एक आदमी बैठा हुआ है।

इस चित्र में दाएं तरफ एक मनुष्य नजर आ रहा है ।

इस चित्र में दिन का समय हो रहा है।

दिखाए गए चित्र में बाई तरफ एक बड़ा खिड़की नजर आ रहा है।

जिम के छत पर पंख लगे हुए हैं।

स्टेशन के अंदर जातायत के लिए सीढ़िया बनी हुई है ।

इस छवि में तीन खाली रेल पटरियां नजर आ रही है।

बताए गए छवि में एक सफेद रंग की बस खड़ी हुई है।

इस छवि में कई लोग बस के ऊपर बैठे हुए हैं।

दिखाया गया तस्वीर एक कपड़े की दुकान की तस्वीर है।

दिखाए गए तस्वीर में एक आदमी काले कपरे पहन कर खरा हुआ है।

दिखाया गया चित्र एक पूजा स्थल का चित्र है।